table and table properties पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि:
writer document में table कैसे प्रविष्ट करें
rows और columns को कैसे जोड़ें और संशोधित करें
और अपनी पसंद के अनुसार table properties को कैसे समायोजित करें
यह tutorial ubuntu linux os 1804 और libreoffice suite version 635 का उपयोग करके recorded किया गया है
इस tutorial पेज पर आपको code files link में दो files उपलब्ध कराई गई हैं कृपया files डाउनलोड और एक्स्ट्रैक्ट करें
एक copy बनाएं और फिर अभ्यास के लिए उनका उपयोग करें
resume odt file खोलें जिसे हमने पहले बनाया है
अब सीखते हैं कि writer document में tables कैसे प्रविष्ट करें
education details के आखिर में cursor रखें और enter दबाएं
document में table प्रविष्ट करने के लिए standard toolbar में insert table icon पर click करें
अब table के आकार का चयन करें वह rows और columns हैं जिनकी आपको आवश्यकता है
मैं 2x4 2 by 4 विकल्प चुनूंगी जो मुझे 4 rows और 2 columns प्रदान करेगा
मैं आपको writer document में table प्रविष्ट करने का अन्य तरीका बताता हूं
उससे पहले हम बदलावों को अन्डू करने के लिए ctrl + z कीज़ दबायेंगे
अब menu bar में table menu पर click करें और फिर insert table विकल्प पर click करें
विभिन्न fields के साथ insert table dialog box खुलता है
name field में table का name resumetable प्रविष्ट करें
हम columns की संख्या 2 रखेंगे
rows field में plus button पर click करें और rows की संख्या बढ़ाएं
संख्या घटाने के लिए minus button पर click करें संख्या वापस 3 करें
नीचे हम styles की सूची देखते हैं
हम इस सूची का उपयोग table के लिए style चुनने के लिए कर सकते हैं यदि हम चाहते हैं
हम अभी के लिए default style विकल्प पर click करेंगे
फिर नीचे दाईं ओर पर insert button पर click करें
education details के नीचे दो columns और तीन rows के साथ एक table प्रविष्ट होता है
अब हम table में tabular form में कोई भी जानकारी type कर सकते हैं
नीचे एक नए toolbar पर ध्यान दें
यहां अधिकांश सामान्य table विशेषताओं के लिए शार्टकट हैं
table के column 1 और row 1 में cell के अंदर click करें
यहां हम type करेंगे secondary school examination
अब निकटतम cell पर click करें और 93 % type करें
इसीतरह दिखाए गए अनुसार हम table में अन्य शैक्षिक विवरण type करेंगे
नई row जोड़ने के लिए to मे स्थित table toolbar में rows below icon का उपयोग करें
जब हम table की आखिरी row में हों तो keyboard पर tab की दबाएं यह हमारे table में अन्य row जोड़ेगा
row 2 column 1 पर click करें
tab की दबाकर cell से cell में आगे बढ़ने में मदद मिलती है
shift + tab कीज़ दबाकर cell से cell में पीछे आने में मदद मिलती है
आखिरी row में column में phd cse और column 2 में 2015 type करें
tables में एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता rows और columns का आकार बदलना है
हम table में rows और columns की ऊंचाई और चौड़ाई को कई तरीकों से समायोजित कर सकते हैं
हम cursor के साथ border को खींच कर मैन्युअल रूप से column की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं इसी तरह हम चौड़ाई कम भी कर सकते हैं
हम row की ऊंचाई के साथ भी ऐसा कर सकते हैं
अब किसी भी row के column 2 में cursor रखें और click करें
फिर menu toolbar में table menu और size विकल्प पर click करें
now select अब minimize column width उपविकल्प चुनें
column की चौड़ाई स्वतः ही समायोजित हो जाती है
यह चुनित column में cells के कंटेंट की चौड़ाई matches करता है
अब tables के साथ कुछ आसान tricks सीखते हैं
मैं प्रदर्शश के इस भाग के लिए tabledemo odt का उपयोग करने जा रही हूं
tabledemo odt file खोलें जिसे open writer में पहले downloaded किया है
यहां here पास 2 columns और 5 rows वाला एक table है
पूर्ण column चुनने के लिए table के column के ऊपरी सिरे पर cursor ले जाएं
cursor downward arrow में बदल जाता है
अब बाएं mouse button पर click करें पूर्ण column चयनित होता है
centre align icon पर क्लिक करके text को centre में अलाइन करें
इस column का पूर्ण text centre में अलाइन हो जाता है
अब अचयनित करने के लिए document पर कहीं भी click करें
अब cursor को table के ऊपरी बाएं कोने पर ले जाएं
cursor नीचे की ओर तिरछे arrow में बदलता है
बायां mouse button click करें पूर्ण टेबल चयनित हो जाता है
अब अचयनित करने के लिए document पर कहीं भी click करें
table में किसी भी cell के अंदर click करें
इस समय toolbar में select table icon पर क्लिक करके पूरे table को चुनें
menu bar में table menu पर click करें और properties चुनें
वैकल्पिक रूप से table toolbar में table properties icon पर click करें
किसी भी तरीके से table properties dialog box खुलता है यहां हम कई टैब्स और कई विकल्प देखते हैं
एक दम दाईं ओर पर ध्यान दें कि alignment automatic set हो गया है
पहले इसे left में बदलें
ऐसा करने पर dialog box में अन्य अक्षम विकल्प सक्षम हो जाते हैं
इस table को mytable1 name दें और width field में 12cm करें
dialog box के नीचे स्थित ok button पर click करें
columns के आकार में बदलाव पर ध्यान दें
फिर से table में किसी भी cell के अंदर click करें
फिर से table toolbar में table properties icon पर click करें
column टैब पर click करें
column width section में हम देख सकते हैं कि केवल 1 और 2 सक्षम हैं ऐसा इसलिए क्योंकि हम हमारे पास हमारे table में केवल 2 कॉलम्स हैं
यहां column 2 की value 10cm करें
adjust columns proportionally के लिए checkbox पर click करें
नीचे दाईं ओर स्थित ok button दबाएं
column 2 के आकार में बदलाव देखें
table toolbar में select table icon पर click करें
अब table toolbar में optimize size icon पर click करें
यह rows और columns की चौड़ाई समायोजित करने के लिए shortcut icon है
distribute columns evenly विकल्प चुनें
columns अब समान चौड़ाई के हो गए हैं
हम cursor के साथ border को खींचकर column की चौड़ाई को मैन्युअल रूप से बढ़ा सकते हैं इसी तरह हम चौड़ाई कम भी कर सकते हैं
हम row की ऊंचाई के साथ भी ऐसा कर सकते हैं
अब सीखते हैं कि table में cells के साथ कैसे कार्य करें
column 2 और row 3 में cell के अंदर click करें
shift और ctrl कीज़ दबाकर cursor को बाएं column के border पर रखें
फिर mouse के साथ border को बाईं ओर खींचें जैसा कि यहां दिखाया गया है उस विशेष सेल का border स्थानांतरित होता है
अब हम cells को विभाजित और विलीन करना सीखेंगे
column 2 और row 3 में cell के अंदर click करें
table toolbar में split cells icon पर click करें
कुछ विकल्पों के साथ एक dialog box खुलता है
split cell into field में 3 प्रविष्ट करें
direction field में हम vertically चुनेंगे और ok button पर click करेंगे
cell 3 समान cells में विभाजित हो जाता है
अब 3 cells चुनें और table toolbar में merge cells पर click करें 3 cells विलीन हो जाती हैं
इस तरह से writer में table में cells विभाजित और विलीन करते हैं
फिर से column 2 और row 3 में cell के अंदर click करें
हम table toolbar में split table icon पर क्लिक करके table को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं
जो dialog box खुलता है कुछ विकल्प दर्शाता है
हम जो चुनते हैं उसके आधार पर table को तदनुसार विभाजित किया जाएगा
पहले मैं no heading चुनूंगी और ok button पर click करूंगी
table 2 tables में विभाजित होता है इस क्रिया को अन्डू करने के लिए ctrl + z कीज़ दबाएं
फिर से column 2 और row 3 में cell के अंदर click करें
table toolbar में split table पर click करें
मैं copy heading विकल्प चुनूंगी और ok button पर click करूंगी
table समान column headings के साथ 2 tables में विभाजित होता है
अब कुछ और अलाइनमेंट विकल्पों के बारे में जानते हैं
इससे पहले दूसरी tables heading row तल के row border को नीचे खींचें
यहां दिखाए गए अनुसार पूर्ण header row चुनें
अब table toolbar में cell के लिए अलाइनमेंट विकल्पों को देखें
default top से align top चयनित है
cell में text कैसे अलाइन होता है इसके लिए align bottom और centre vertically पर click करें
cell में background रंग देने के लिए पहले cell में click करें
table toolbar में table cell background color icon पर click करें
पीला default चिन्हांकित रंग है
पूर्ण रंग palette खोलने के लिए icon के downarrow पर click करें
background color icon के आगे हम autoformat styles icon देखते हैं
autoformat dialog box खुलता है
हम यहां विभिन्न styles देखते हैं जिसे हम अपने table में लागू कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं
cancel button पर click करें
table toolbar में हम भिन्न borders border styles border colours चुनने के लिए icons देख सकते हैं
और यहां table toolbar में numerical फॉर्मेट shortcut icons भी हैं
इन सब विकल्पों को स्वयं explore करें
ctrl + s कीज दबाकर अपनी file सेव करें और फिर ऊपरी दाईं ओर पर स्थित x आइकन पर क्लिक करें
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इस tutorial में हमने सीखा
rows और columns जोड़ना और संशोधित करना
अपनी पसंद के अनुसार table properties समायोजित करना
as an assignment नियतकार्य के रूप में
3 rows और 2 columns वाला एक table प्रविष्ट करें
column one और column two के रूप में columns के लिए headings जोड़ें
table के सभी cells में कुछ text जोड़ें फाइल को cells और बंद करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
हम spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध queries को इस forum में post करें
spoken tutorial project mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूं धन्यवाद